मंदिर का पीछे बहुत बरा पेर भी दिखाई दे रहा है।

नीचे हमको जमीन में कारपेट भी डिखाई डे रहा है।

बोरा भी दिखाई दे रही है।

नीचे हमको जमीन भी दिखाई दे रहा है।

घर का सामने छोटा सा मैदान भी डिखाई डे रहा है।

नीचे हमको बहुत ज्यादा बंबू भी दिखाई दे रहा है।

हमको इधर एक बेडरूम दिखाई दे रहा है।

बाहर का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

हमको इस तस्वीर में एक टीना का घर दिखाई दे रहा है।

वो छोटा सा दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

हमको इधर दीवार भी दिखाई दे रहा है।

हमको इस तस्वीर में एक लंबा सा घर दिखाई दे रहा है।

इधर हमको पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा ब्लू कलर का पिलर भी दिखाई दे रहा है।

हमको इस तस्वीर में एक सिंटेक्स दिखाई दे रहा है एक व्हाइट कलर का कार दिखाई दे रहा है।

जिम का ऊपर ग्रीन कलर का कारपेट भी दिखाई दे रहा है।

बाहर हमको बहुत सारा ड्रम और सिंटेक्स दिखाई दे रहा है।

छोटा छोटा पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

हमको इधर एक जंगल दिखाई दे रहा है।

इधर हमको टाइल्स भी दिखाई दे रहा है।

हम को इस तस्वीर में एक लंबा सा घर दिखाई दे रहा है।

पीछे हमको पहाड़ दिखाई दे रहा है।

हमको इधर एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान का अंदर हमको बहुत ज्यादा बैलून दिखाई दे रहा है।